कुछ शो-पीस लटके हुए हैं।

सामने कुछ पौधे लगे हुए हैं। कुछ गाडीयाँ खड़ी हुई हैं कुछ स्कूटी व बाइके भी खड़ी हुई हैं।

सामने एक बैनर नज़र आ रहा है। बैनर पर एसबीएम लिखा हुआ है।

एक छोटा बैनर नज़र आ रहा है जिसका कलर येलो है। कुछ खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। म --

कुछ कुर्सियां बिछी हुई हैं। कुर्सियां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग सामने खड़े हुए भी हैं।

कुछ सामने लोग भी खड़े हुए हैं।

एक आदमी जो है हाथ में बाल्टी लिए हुए खड़ा है।

सामने एक अलमारी बनी हुई है जिसमें बोहोत सारे शेकशंस बने हुए हैं।

बहुत सारी कलाकरती भी बनी हुई है सामने एक पंखा लगा हुआ है

कुछ हरे भरी घांस भी नज़र आ रही है कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। एक पौधा भी नज़र आ रहा है। कुछ बिजली के खम्भे भी नज़र आ रहे हैं।

कुछ कच्ची मिट्टी नज़र आ रही है। कुछ छोटे-छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं।

दरवाजे के अंदर कुछ लाइटे नज़र आ रही हैं। साइड में एक छोटा दरवाजा नज़र आ रहा है। छोटा दरवाजा खुला हुआ है।

सामने एक बोहोत बड़ा हॉल नज़र आ रहा है। हॉल में बोहोत सारी लाइटें --